ये देख सकते हैं ये पानी का मजा ले रहें हैं और ये देख सकते हैं ये पत्थर पे बैठ के यहाँ पे बैकग्राउन्ड कितना अच्छा आ रहा है ये फोटो क्लिक की गई है।

और ये देख सकते है इन्होंने कै-टोपा भी लगाया हुआ है और जैकेट भी पहनी हुई है ऊपर आप देखेंगे लास्ट में आपको पेड़-पौधे नजर आ रहे होंगे सामने की तरफ।

ये दुकानें वगैरा यहाँ पे दिखाई दे रही है जिसमें की लोग पर्चेसिंग करते नज़र आ रहें हैं सामान खरीदते हुए कुछ लोग आते-जाते दिखाई --

ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको वाइट कलर की बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें लिखा है सॉल ट्री और ये सामने आपको ट्री दिखा रहा है और ये देखिए आपको नीचे लिखा है।

देख सकते है के आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा यह एक मार्केट जैसा है जिसमें कि लोग बाग देख सकते हैं।

ढेला दिखाई दे रहा होगा रिक्शा हैरिक्शा आपको दिखाई दे रहा होगा देख सकते हैं यहाँ पे बैनर बोर्ड लगे--

जो कि बहुत प्यारे आये है इस फोटो मे और देख सकते है नीचे आपको एक गेट दिखा दे रहा होगा जिसमें लिखा है कला भवन।